जहां पे जो है रिसेप्शन के बाहर ही इन्होंने डेंटल क्लिनिक लिखा है उसे पे कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है और अंदर रिसेप्शन पे--

और अंदर एक और दरवाजा लगा हुआ है जहां पे लिखा हुआ है कृपया अपने जूते बाहर उतारे।

न्यू न्यू जो है वो बाइक्स बाहर कंपनी के बाहर रखी हुई हैं और एक्टिवा भी यहां पे खड़ी हैं और बुलेट भी एक--

जो है खिलौने लगे हुए हैं और वो अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके साथ ही पेड़ है वहां पे बहुत सारे कलरफुल फ्लॉवर्स लगे हुए वहां पे बैठने के लिए।

अ बिहेविंग हैप्पी मोमेंट्स और ऐसे टेस्टी टेस्ट फुल --

फूलों से और श्री नवदुर्गा चंडी माता के नाम से है यहां पे है जो लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं अंदर--

और बाहर जो खिड़कियां वो ब्राउन कलर की खिड़कियां है और ऊपर जो है बहोत अच्छे से झूमर लटका हुआ है फैन है ऊपर--

यहां पे अह मतलब काम चल रहा है।

यहां पे एक बहोत बड़ा सा जो है वो गार्डन है और यहां पे बहोत सारे बच्चे जो है--

फ्री फायर जो है वो लिखा हुआ है।

मतलब जंगल है पूरा एकदम पहाड़ बने हुएं हैं।